पर्ल में if और ifelse कंडिशनल स्टेटमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
पर्ल में if स्टेटमेंट और
ifelse स्टेटमेंट
मैं उबंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल perl 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा
आप अपनी पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
पर्ल में for foreach while और dowhile लूप्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल निम्न कंडिशनल स्टेटमेंट्स प्रदान करता है
if
ifelse
ifelsifelse और
switch
इस ट्यूटोरियल में हम if और ifelse स्टेटमेंट्स देखेंगे
पर्ल में if स्टेटमेंट का उपयोग
कोड के भाग को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है जब विशिष्ट कंडिशन संतुष्ट होती है
if कंडिशनल स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स निम्न है
if स्पेस ओपन ब्रैकेट condition क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
enter दबाएँ
कोड का भाग सेमीकॉलन निष्पादित होता है जब कंडिशन true है
एंटर दबाएँ क्लोज कर्ली ब्रैकेट
if स्टेटमेंट के अंदर का कोड निष्पादित होगा केवल जब कंडिशन true होती है
अब if स्टेटमेंट का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
gedit conditionalblocks dot pl स्पेस &ampersand
और enter दबाएँ
यह gedit में conditionalblockspl फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने if के लिए कंडिशन निर्दिष्ट की है जो वैरिएबल count की वैल्यू को चेक करता है
equal to equal to चिन्ह देखें यह कंपेरिजन ऑपरेटर है
कंडिशन $count equal to equal to 5 वैरिएबल count की वैल्यू के लिए फिर से चेक होती है
जब यह 5 के बराबर होता है if ब्लॉक के अंदर का कोड निष्पादित होगा
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ
सुनिश्चित कर लें कि आप उस डाइरेक्टरी में है जिसमें आपने अपनी फाइल सेव की है
किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें
perl hyphen c conditionalblocks dot pl
और enter दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल विंडो पर प्रदर्शित होगी
conditionalblockspl syntax ok
जैसे कि वहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर नहीं है हम perl conditionalblocks dot pl को टाइप करके
पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
i am inside if statement
gedit पर वापस जाएँ
वैकल्पिक रूप से हम ऊपर लिखी if स्टेटमेंट को लिख सकते हैं
print स्पेस डबल कोट्स i am inside if statement slash n क्लोज डबल कोट्स स्पेस if ओपन ब्रैकेट dollar count स्पेस equal to equal to space 5 क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
अब ifelse स्टेटमेंट को देखते हैं
यह स्टेटमेंट उपयोगित है जब यूजर कोड के एक भाग को निष्पादित करना चाहता है
जब कंडिशन true होती है और
कोड के दूसरे भाग को जब कंडिशन falseहोती है
ifelse कंडिशऩ के लिए सिंटेक्स निम्न है
if स्पेस ओपन ब्रैकेट condition क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ
कोड का भाग सेमीकॉलन
निष्पादित होगा जब if कंडिशन true होती है
enter दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस else स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर
कोड का दूसरा भाग सेमीकॉलन
निष्पादित होगा जब if कंडिशन false होती है
एंटर दबाएँ क्लोज कर्ली ब्रैकेट
अब फिर से conditionalblockspl फाइल पर जाएँ जिसे हमने gedit में पहले ही बनाया है
count वेरिएबल को 4 निर्दिष्ट करें फिर if ब्लॉक के अंत में स्पेस टाइप करें
else
स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ
print स्पेस डबल कोट्स i am inside else statement slash n क्लोज डबल कोट्स सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ और क्लोज कर्ली ब्रैकेट
यहाँ 4 वेरिएबल $count के लिए निर्दिष्ट है
count वेरिएबल के वैल्यू की तरह 5 मेल नहीं खाता है
if ब्लॉक के अंदर का कोड निष्पादित नहीं होगा
इसके बजाय else ब्लॉक के अंदर लिखा कोड निष्पादित होगा
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
terminal पर जाएँ
और टाइप करें perl hyphen c conditionalblocks dot pl किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए
अब enter दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
conditionalblockspl syntax ok
जैसे कि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर नहीं है अब हम पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे
टाइप करें perl conditionalblocks dot pl
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
i am inside else statement
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके
पर्ल में if और
ifelse कंडिशनल स्टेटमेंट्स
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
प्रिंट करें it is an open source language
जब पर्ल के रूप में वेरिएबल वैल्यू घोषित होता है
अन्यथा प्रिंट करें its a proprietary language
निम्न link पर उपलब्ध video देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करके भी देख सकते हैं
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @ spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद